जो वाइब्रेशन करता है मशीन उ मशीन से वाइब्रेशन कर अच्छे से प्लेन किया जाता है ढलाई होने के बाद |